और एक कमरा है जिसमें --

यहां एक जेब्रा क्रॉसिंग बना भी हुआ है।

सड़क भी है जो की नदी के ऊपर से जा रही है और इसमें बहोत सारे--

एक एयरपोर्ट है ।

और इसे बढ़िया बनाना चाहते हैं ये दोनों सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाए हैं।